यह बहुत अच्छा खेती-बाड़ी करने का इलाका है और ये एक खुला मैदान भी कह सकते हैं।

और यहां पर एक गेट भी है लकड़ी का जिसके बाहर बहुत अच्छा नजारा होता है हम देखते रह जाते हैं बहुत हमारा बहुत अच्छा है।

यह एक ऐसी जगह है जहां ट्रेन चलाई जाती है।

और एक ब्रिज जैसा मालूम होता है| पानी थोड़ा हरे कलर का दिख रहा है जोकि हकीकत में पानी ही है और बहोत सारे इसके अलग अलग पेड़ हैं| बहोत अच्छे --

यह एक स्टोर है जो जिसका एक बोर्ड लगा हुआ है इस बोर्ड पर लिखा है --

लोहा का सामान प्लास्टिक के शीशे बनाने में काम आता है। प्लास्टिक के ज्यादातर बल्ले बनते हैं।

जिसके ऊपर एक बोर्ड लग रहा है एम.एच.ए.एच. वहां एस यू पी आर सुपर --

सी आर ओ सी के ई आर वाई क्रा को को करी बहुत अच्छा स्टोर है।

सरफ चीनी पत्ती दूध जैसी आदि चीजे रखी हैं नीचे कट्टे भी रखे हैं जो बोरी कहते हैं।

यह एक दुकान का बाहरी भाग है जहां अंदर जाना पड़ता है अगर आप अंदर जायेंगे तो आप देखेंगे की पेंट की बाल्टी- बाल्टी रखी है।

यह एक सुपर स्टोर है जिसके अंदर एक चाचा कोने में बैठे हैं और जिन पर ये माला लगा रखी है फोटो में --